ओकरा निचे एगो गाड़ी लगल है उ तो गाड़ी हरदम लगल रहता है।

त कोई चीज़ का जुलुस है।

देख नहीं रहें हैं यहाँ बहुत सारे लोग बाइक से उतर रहें हैं बहुत सारे लोग --

और तीन गो चार गो --

इसके चलते स्फूर्ति रहता है दौड़ते रहता है। यहाँ पे जिम भी है।

काम्प्लेक्स नीचे टेम्पू लगा है एगो --.